ये बड़ा सा हॉल है इसमें लाल रंग की कुर्सियां हैं।

और यहां पे टेबल है टेबल पे एक पानी की बॉटल है।

कुछ डिजाइन भी यानी बाहर से और दुकानों को फूलों का फूलों से सजाई गई है।

यहां पे पांच छे बाइक है और एक छोटा सा बच्चा है।

और एक लड़का बाइक भी चढ़ रहा है।

ओ एक साइड में भी कुछ अ बैनर लगा है।

यहाँ पर एक सफेद रंग का सोफा है।

और कुछ ड्रारे हैं और यहाँ से शीशा है।

ये लग रहा है कि यहाँ पे फर्निशिंग का दुकान है।

ये खुला यह एक मैदान है जहाँ पे कुछ लोग हैं सफेद रंग की गाड़ी है।

चार-पाँच बंदे हैं और कुछ बाइक्स और साइकिल भी हैं।

ये स्कूल जैसा कुछ सफेद रंग की बिल्डिंग है।

और लकड़ी का लकड़ी की कुर्सी जैसी है।

ये एक अह मैदान है जिसमें दो लड़के हैं और एक खंबा है और सफेद रंग का दीवार है।

अ दूर से एक गाड़ी दिख रही है सफेद रंग की।

ये दो बंदे हैं एक बंदा सीढ़ी पे चढ़ के काम कर रहा है दूसरा बंदा--

ये बड़ा सा ऑफिस है जिसपे लैपटॉप है कुछ कागजात हैं टेबल हैं कुर्सी हैं अलमारी हैं दूर से भी--

ये केक है बिस्किट केक।

तकिए हैं अलमारी है लॉकर है।

दीवार पे हरे रंग और सफेद रंग करके हैं।

ये एक दुकान है जिसमें बहुत से बाल्टी हैं प्लास्टिक के जिसमें--

तेल बेचा जा रहा है जो गाड़ियों के लिए होता है।

और वहाँ पे सफेद रंग की गाड़ी है रुकी हुई है।

और साइड में पैकेट में कुछ बच्चों के लिए सामान है।

ये यहां पे बहुत सारे गमले हैं जार हैं।

अ ज जो जैसी भी रेत उठा रहा है और वहाँ से एक ईंटों का अ--

ये दुकान दिख रहा है जिसमें अगर--

और कुछ दुकाने नजर आ रहे हैं और एक बोर्ड भी है इस बोर्ड के पीछे एक बिल्डिंग है छोटी।

ये बच्चे यहाँ पे सफेद रंग के कपड़े पहने हैं।

अ कुछ झूले भी हैं कम और हरियाली है।

और बोर्ड भी लगे हैं पेड़ भी लगे हैं।

ये ए_टी_एम है जिसके बाहर दो औरतें हैं।